अ किसी अ क्रिश्चियन अ मंदिर का फोटो है जिसके सामने काफी सारी भीड़ लगी हुई है और फूलो से डेकोरेट हुआ है।